और पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

आसमान पर बादल छाए हुए हैं और यहां पर पानी भी दिखाई दे रहा--

और पंखा भी दिखाई दे रहा है।

और छत भी दिखाई दे रही हैं।

और आसमान दिखाई दे रहा है आसमान पर बादल छाए हुए।

बड़ा मेदान सा दिखाई दे रहा है।

फेविकोल की बॉटल्स भी दिखाई दे रही है।

आसमान पर बादल छाए हुए हैं।